भोजन की व्यवस्था के लिए आजू-बाजू में --

दौड़ रही है धन्यवाद --

यह एक डाइनिंग टेबल बताया डाइनिंग टेबल में चार पांच प्लेट लगा रखी है हर एक प्लेट में एक चम्मच रखे हुए है यह कुछ खाना रखा हुआ है पानी के बोटले रखी हुई है और कुछ पेपर नैपकिन यहां बिखरे हुए है।

यह गीली मट्टी में एक फूलों का बगीचा यहाँ दिख रहा है धन्यवाद।

लकड़ीयों के सहारे और प्लाईवुड के सहारे अ छत की दिवारो की तैयारी की जा रही है।

एक पिंजरा घर में बहुत से एक पिंजरे में बहुत सारे पक्षी है दिख रहे है हरे कलर के पक्षी है हरे पीले नीले सफेद कलर के पक्षी यहां दिख रहे है।

यह एक विमान एयरपोर्ट में लैंडिंग करते हुए दिख रहा है उसके नीचे में लाल लाइट जले हुए है उसका पीछे का जो एंगल है वो लाल कलर का है।

कुछ स्तंभ बनाये गए है कुछ मंदिर टाइप यहाँ वहाँ शेप दिया गया है सभी छोटे बड़े पत्थरों में उसको तब तब्दील किया गया है साथ ही उसके सामने एक नीला कारपेट रखा गया है यह दिख रहा है धन्यवाद।

स्कूल का कोई हॉल दिख रहा है। हॉल के नीचे में कई बच्चे बैठे हुए अ दीवाले लाल कलर और पीले कलर की है। कई खिड़कीया आजू-बाजू में बच्चे नीचे बैठे के अपने कलाकृति हस्तकला --